और बहुत ही हरा भरा दिख रहा हैउसकी बगल से एक नदी गुजर रही है और बहुत खूबसूरत लग रही है।